यहाँ पर ये बच्चा पेड़ पौधों को पानी दे रहा है।

इसमें एक बेड़ भी पड़ा हुआ है और काफी बड़े-बड़े चोखट भी लगाए गए हैं।

ये एक जंगल है इस जंगल में काफी सारे मकान बनाए गए हैं।

ये एक काफी बड़ा बड़ा और पुराना जंगल दिखाई दे रहा है।

ये चीज की दुकान काफी बड़ी है और ये मकान भी काफा काफी बड़ा दिखाई दे रहा है।